ये एक मंदिर है मंदिर के दाएं साइड दो व्यक्ति खड़े हुए है मंदिर के बाएं साइड एक गार्ड बैठा हुआ है।

बिल्डिंग दिख रही है और उसी के आगे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

दरवाजे के बगल में एक रोटेट इनर आउटर गेट लगा हुआ है।